आदमी व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

दो लड़की है जो एक वाइट कलर का पहनी है।

जो रेड और वाइट कलर का है।

एक स्विमिंग पुल है जो ब्लू कलर का है।

अलग अलग टाइप के कमरे मे कुछ क्राउड --